बिल्डिंग बन रही है इसमें बहुत सारे मिस्त्री लोग काम करने आते है और बिल्डिंग बना दिखाई दे रहे है।

बहुत अच्छे भी दिखाई दे रहै है और बहुत सुंदर भी टाइल्स लगे हुए है रेहता है इसमें--